ये एक म्यूजियम घर है जिसमें दो बड़ी-बड़ी मछलियां'--

यहां पे कार गैरेज है ब्लैक कलर वाइट कलर कार खड़ी है टेंपो खड़ा है।

स्क्रूस पड़े हुए हैं नीचे ब्राउन कलर का टाइल्स है।

बड़ा सा चर्च है खंभे लगे हुए हैं पेड़ हैं।

हॉल में लड़कियां डांस कर रही है फ्लोट में--

सामने बिल्डिंग है बीच में पानी की नहर है।

पीछे वाइट कलर का लाइट है।

पीछे पिलर है।

ऑरेंज कलर की कुर्सी है बड़ा सा टेबल है।

सेंट्स हैं छोटी बड़ी बोतल्स हैं।

सब में पौधे लगे हुए हैं नीचे ब्राउन कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

पर जंप करने के लिए बिल्डिंग्स बनी है जहां से सब जंप करेंगे।

कुछ पिलर बने हुए हैं नया काम चालू है पीछे ऊपर पीछे पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर आसमान दिख रहा है .]

बड़ी-बड़ी पेड़ हैं झाड़ है लाइट है।

एक सड़क बनी हुई है उधर आदमी टहल रहे हैं भाग रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं बीच में घास है साइड में बड़े-बड़े पेड़ हैं।

वो भी दवाइयां गिन रहा है पीछे बोर्ड है ब्राउन कलर का।

एक नाइट होटल का रूम है बड़ा सा गोल गोल सोफा है गोल टेबल है।

पीछे पहाड़ बने हुए हैं उसके आगे बड़े-बड़े पेड़ हैं कुछ नेट्स लगे हुए हैं पिलर लगे हुए हैं।

कच्ची मिट्टी है पीछे आकाश दिख रहा है सफेद आसमान है।

नीचे गार्बेज कैन पड़ा है गीली मिट्टी है पत्थर पड़े हुए हैं।

गैरेज है इसमें सम कार पार्किंग होती है एक लाइट का खंबा है --

ये एक फिश मार्केट है जिसमें बहोत सारी छोटी बड़ी मछलियां हैं।

बच्चे भी हैं आगे फ्लोर बना हुआ है .]

एक पहाड़ है इसमें बड़ी बड़ी स्टोन है एक आदमी गुफा से बाहर आ रहा है वो उंगली दिखा रहा है वो हंस रहा है उसने ब्लैक शर्ट पहन रखी है।

वो निकलने की कोशिश कर रहा है नीचे ग्रीन पर--

एक आदमी बूट पहन के उसको खींच रहा है।

बड़े खंबे हैं टेबल पे सामान पड़ा है पानी है।

गाड़ी ऊपर हैंग करी हुई है पिलर है।

एक बालकनी है उसके पीछे पेड़ हैं।

वाइट कलर की पूरी बिल्डिंग है बाहर पत्थर पड़े हैं बहुत ।